कई सारे आ हंस इधर है और इसके बगल में एक जगह है उसके ऊपर कई सारे आ डॉल रखा हुआ है ।

कुछ सफेद और लाल रंग का मिक्स बना हुआ कुछ सिर्फ लाल बना लाल रंग का है और कुछ सफेद रंग का है।